रुम लोग रहा है लग रहा है जैसे मे बोहुत बड़ा अ स्कूल है जिसमे पे पेरेंट्स डे हो रहा है।

बोहत सारे गेट भी लोगरी है इसमें और बोहुत सारे कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। गुब्बा फु चार पांच ठो पंखा भी लगे हैं।

और पहाड़ से ऊपर पहाड़ पर से पानी भी गिर रही है। इसमें बहुत खुबसूरत सा नजारा लोक रहा है इसमें।

और आसपास बोहुत सारी घर दिखाई दे रही है और पेड़-पौधे भी दिखाई दे रही है कुछ सर्कुल का पेड़ भी दिखाई दे रही है और पोस्टर भी दिखाई दे रही है।

एक उत्सव में बोहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं लग रहा है जिसमे से कुछ लोग क्रिस्चन भी है।

एक पेट्रोल पम्प का गाड़ी भी खड़ी हुई है जिसमे लग रहा है जैसे पेट्रोल भरा रहा है।

आस-पास अ बोहुत सारे बिल्डिंग भी लगे हुए हैं बने हुए है आर कुछ मोसायकिल भी खड़ी है।

और एक आदमी खड़े हैं और एक बाहर पोस्टर भी लगी है।